हरे कलर के व्हाइट कलर के बादल आदल बने हैं दिखाई दे रहे हैं सामने।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगी दिखाई दे रहे हैं।

इधर हरी भरी घास फूस लगाई गई हैं सामने की ओर--

इधर हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे--

सामने की ओर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही जो ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी--

कैसा ये झांगा वांगा बनाए गए दिखाई दे रहा है सामने एक--

वाइट कलर का पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है कई सारे पंख गोल घूमता दिखाई दे रहा है।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है। हल्के-हल्के व्हाइट कलर के बादल-वादल बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

बारिश का मौसम व्हाईट कलर गोल भुट्टा दिखाई दे सामने की ओर एक नदी दिखाई दे नदी में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है सामने की ओर एक नाव खड़ी दिखाई --

की सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं सामने कोई जंपिंग गेम खेलते--